एक होटल की बिल्डिंग नजर आ रही है जहाँ पे बहुत सारे काँच की बालकोनी लगी हुई है कुछ खिड़कियां भी नजर आ रही है होटल की एंट्री गेट उं भी बहुत बड़ा नजर आ रहा है।